दुकान का नाम टाडा टांग है जो कि एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है एम_आई फोन का।

स्टोर के अंदर लाइट लगे हुए हैं जो जल रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग का बालकनी का नजारा दिखाया गया है।

बच्चे पढ़ रहे है और एक टीचर उनको व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखकर पढ़ा रहे हैं।

अंडे रखे हुए है शेल्फ --

यहां बहुत सारे इंसान डुबकी लगा रहे हैं।

और टेबल पर कुछ टीसू पेपर हैं और एक पानी की बॉटल है।

बिल्डिंग के आगे एक इलेक्ट्रिक पोस्ट है बिल्डिंग के साइड में दूसरा बिल्डिंग है।

बहुत सारा इंसान एस_बी_आई बैंक के अंदर जा रहे है।

और आदमी उस साइड देख रहा हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक मैदान दिखाया गया है।

व्यक्ति के गले में एक इयरबड्स ब्ल्यूटूथ है।

जो शो देखने आए हैं।

बहुत सारे लाइट्स स्टेज पर लगे हुए है।

जो एक पेपर पकड़कर खड़ा हुआ हैं।

ओ बिल्डिंग का कलर रेड और व्हाइट से मिक्सर से बना हुआ है।

इस स्टोर के बाहर लेविस का बैनर है।

मॉल के अंदर में कुछ डमी है जो कपरे पहने हुए हैं।

पांच पैरट बैठे हुए हैं।

ऑफिस के अंदर में पर्दे का कलर नीला है।

दुकान से सामान ले रहे हैं।